की स्थापना की जाती है शादी का माहौल है।

ये एक गाड़ी का कारखाना है जहां पर गाड़ियां ठीक होती हैं।

कराटे सीखने से मेहनत होती है दरिया बिछी हुई है।

ये कोई रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे रेसीपी के फोटो छपे हुए है।

रेसिपी खाने के लिए गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

ये एक डॉक्टर एक डॉगी का इलाज कर रहा है।

और पीयानो के साथ काफी सामान रखा हुआ है।

और धरती में रखा हुआ है जमीन मर --

मशीने भी काफी अच्छी अच्छी रखी गई है वेराइटी बहुत सारी है।

बड़ा ही अच्छा माहौल है चारो तरफ लोगों की चहचहाट है।

बड़ी मशीन है एक ही आदमी दिख रहा है।

यह कोई इंस्टिट्यूट का फोटो है।